menu and endpoints पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम url patterns set करना सीखेंगे हम menu management के बारे में भी सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबंटु लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम drupal 8 और firefox बेव ब्राउजर आप अपने पसंद का कोई भी बेव ब्राउजर उपयोग कर सकते हैं
इस tutorial में हम सही url paths बनाने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे
endpoints और aliasesendpoints url paths हैं जो विशेष कंटेंट प्रदर्शित करती हैं
default रूप से drupal में node का endpoint node/node: id है
इसे server पर प्रविष्ट करने से node का कंटेंट प्रदर्शित होगा id की संख्या मनुष्य़ के पढ़ने योग्य नहीं है
अर्थात हम आसानी से node/278162 के साथ विशिष्ट कंटेंट को संगठित नहीं कर सकते एक alias बनाने से मनुष्य के पढ़ने योग्य endpoint उपलब्ध है
alias उसी कंटेंट के लिए एक वैकल्पिक url path है हम उसी कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए या तो मूल या कई aliases में से एक चुन सकते हैं
उदाहरणस्वरूप node/278162 और content/drupalcampmumbai2015
दोनों समान कंटेंट प्रदर्शित करते हैं दूसरा याद रखने के लिए आसन है
अबurl patterns बनाते हैं जो हमारे पास उपलब्ध सभी कंटेंट पर लागू होगा
url paths सेट करने के लिए तीन modules चाहिए
वे तीन modules pathauto token और ctools हैं
कृपया आगे बढ़ें और अपनी machine में pathauto installed करें
pathauto project पेज पर वापस आएँ आप देखेंगे कि pathauto को token और ctools की आवश्यकता है
token और ctools install करें इन modules को install करने के बाद on करें
यह होने के बाद हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं
यहाँ नीचे दाईं ओर configuration पर click करें search and metadata section में आप url aliases देखेंगे
default रूप से यहाँ कोई भी url aliases उपलब्ध नहीं है
patterns टैब पर click करें add pathauto pattern button पर click करें
pattern type dropdown पर click करें
यहाँ term forum content taxonomy term और user के लिए भिन्न patterns बना सकते हैं
उदाहरणस्वरूप मैं content चुनूँगी path pattern फिल्ड में हमें पैटर्न टेम्पलेट प्रविष्ट करना होगा
template variables को tokens कहते हैं वे प्रत्येक entity के लिए तेजी से बनते हैं
token module इन variablesको प्रदान करता है जब आप किसी input form में browse available tokens को देखते हैं तो आप पूर्वनिर्धारित tokens प्रविष्ट कर सकते हैं
path pattern box पर click करें जहाँ आप token प्रविष्ट करना चाहते हैं
type करें content/फिर browse available tokens link पर click करें
available tokens दिखाने के लिए एक popup window खुलता है
मानिए कि हमें इस तरह का pattern चाहिए content/title of the page तो पेज के टाइटल के लिए token nodes section में है
nodes section के right arrow button पर click करें
token node: title चुनें जो पेज के title द्वारा बदला गया है
यह form box में cursor की location पर node: title प्रविष्ट करेगा
यदि ऐसा नहीं होता है तो box पर click करना सुनिश्चित करें और आवश्यकतानुसार cursor को रखें token को फिर से चुनें
content type में हम उस entity type को चुन सकते हैं जिस पर यह pattern लागू होना चाहिए
सभी types को चुनें ताकि यह pattern उन सभी के लिए default हो जाए
यह setting विशिष्ट type के लिए ओवर्राइड की जा सकती है उदाहरणतः हम usergroup/node: title बना सकते हैं और इसे केवल user group के लिए लागू कर सकते हैं
label field में type करें content title फिर save button पर click करें यहाँ हम नया pattern जाँच सकते हैं जिसे हमने अभी बनाया
यह pattern जोड़े गए सभी नये कंटेंट्स के लिए url aliases बनाने के लिए लागू किया जायेगा लेकिन यह मौजूदा कंटेंट्स के लिए url aliases नहीं बनायेगा
मौजूदा कंटेंट्स में इसे लागू करने के लिए bulk generate टैब पर click करें content type चुनें और update button पर click करें
इसने url aliases को बनाना शुरू कर दिया है यह मौजूदा कंटेंट्स की संख्या के आधार पर समय ले सकता है
list टैब पर click करें हम अपने कंटेंट्स url aliases के लिए देख सकते हैं
site पर प्रत्येक node में/node/nodeid का system path है
नया url alias यहाँ पहलेalias column में हैं
हम देख सकते हैं कि सभी aliases समान pattern का अनुकरण करते हैं आपको ऐसा प्रत्येक समय नये content type बनाते समय करना होगा
patterns बनाने के लिए निम्न नियम का उपयोग करें लोउर केस शब्दों का उपयोग करें शब्दों के बीच में स्पेस न दें
शब्दों को hyphen से अलगअलग करें underscore से नहीं search engine optimization seo के लिए मनुष्य के पढ़ने योग्य अर्थपूर्ण शब्दों का उपयोग करें
समय द्वारा कंटेंट्स को वर्गीकृत करने के लिए date tokens का उपयोग करें
यहाँ settings टैब में url alias pattern को control करने के लिए अधिक options उपलब्ध हैं यहाँ हम डिफॉल्ट separator length आदि देख सकते हैं
हम यह भी देख सकते हैं कि default रूप से कई सामान्य शब्दों को pattern से हटाया गया है यह endpoints को संक्षिप्त और अर्थपूर्ण बनाए रखता है
संक्षेप मेंpathauto और token modules हमें किसी भी समयurl patterns
delete aliases और bulk generate aliases सेट करने की अनुमति देते हैं
अब से प्रत्येक नया node हमारे द्वारा बनाए गए patterns का उपयोग करेगा
अब हम menus के बारे में बात करेंगे
हमने एक यादृच्छिक क्रम में हमारी site के लिए ज्यादातर views और basic पेज पर आधारित menus जोड़ दिये हैं
अब देखते हैं कि हम menu system कैसे बदल सकते हैं
structure पर जाएँ नीचे scroll करें और menus पर click करें
हमारे पास यहाँ कई भिन्न menus हैं जो default रूप से drupal में हैं हमारे पास 6 menus हैं
main main navigation menu में रूचि है अतः edit menu पर click करें
यहाँ हम अपने menu links को click और drag और क्रम बदलने में सक्षम होंगे
home और upcoming events को ऊपर drag करें
आप अपने अनुसार इनका क्रम बदल सकते हैं इसके बाद save पर click करें
अब हमें events और upcoming events प्राप्त हुआ events को क्लिक करें और ऊपर ड्रेग करें और फिर upcoming events को दाईं ओर ड्रेग करें
यह sub menu बनायेगा
यह काफी आसान है save पर click करें और अपने front पेज पर एक नजर डालें
ध्यान दें कि हमें हमारे 4 menus मिल गए हैं
हमारा event sub menu कहाँ गया
कृपया ध्यान दें कि drupal में सभी themes सबमेन्यू या dropdown menus को support नहीं करते हैं bartick theme इनमें से एक है
अभी के लिए structure menus पर जाएँ और main menu को edit करें upcoming event को फिर से यहाँ ऊपर ड्रेग करें save पर क्लिक करें
क्या यदि हमें अपने site के विशिष्ट section के लिए या विशिष्ट node के लिए link चाहिए
उदाहरण के लिए यदि मुझे मेरे forums के लिए एक menu link चाहिए तो मैं site पर वापस जाऊँगी
forums page पर जाएँ वास्तविक url को copy करें जो /forum है
फिर वापस आएँ और edit menu और फिर add link पर click करें
इसे forum नामक title दें और copied किए गए link को paste करें
यदि आप विशिष्ट कंटेंट का भाग देख रहे हैं तो f या g type करें इन अक्षर से शुरू होने वाले सभी नोड्स दिखाई देंगे
उदाहरण के लिए यदि हम a type करते हैं तो सभी nodes जिनका टाइटल a है दिखाई देंगे
हम एक चुनेंगे जिसे हम देख रहे थे और यह हमें बतायेगा कि यह node id number 1 है
यदि हम एक internal path चाहते हैं जैसे कि node को जोडने की क्षमता फिर यह/node/add होगा
यदि हम इसे homepage पर link करना चाहते हैं तो यह front होगा लेकिन हम यहाँ/forum चाहते हैं जो कि forum का link है
save पर click करें और अब हमारे पास forum का link है
save पर click करें दुबारा जाँचे कि वह कार्य कर रहा है
अतः इसे अच्छे से समझने के लिए इस पर कार्य करें हमारे menu system में content type या view के लिए menu item बनाने के लिए यह आसान होगा
इसी के साथ हम tutorial के अंत में पहुँ गए हैं
संक्षेप में इस tutorial में हमने सीखाurl patterns सेटिंग करना menu management
यह video acquia और os ट्रेनिंग से लिया गया है और spoken tutorial project आईआईटी बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है
इस link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करके देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें
spoken tutorial project nmeict मानव संसाधन विकास मंत्रायल और nvli संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है
यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद